ये एक नदी के पास का फोटो घिचा गया है जो कि दो लेडिस --

ये एक जी_एस_टी सेवा केंद्र है जो कि यहां ताराचंद्र प्रसाद अधिवक्ता पेटीएम द्वारा इंडिया मोस्ट सिंसियर बैंक है।

और इसमें ईंटा वगैरा से घर बनाया गया है और एक चिमनी भी इसमें दिख रहा है मिट्टी का खेत वगैरा भी दिख रहा है।

जो कि फोटो एक चिमनी वाले जगह का है।

ये इसका बॉउंड्री जो है वो व्हाइट कलर के दीवाल से पेंट से किया गया है।

आपको ये बहोत ज्यादे अच्छा लग रहा है आपको ये दुकान है सीट बेल्ट बहोत ही सुंदर लगा--

एक जो पलंग वगैरा दिख रहें वो काफी सुंदर और चमकदार दिख रहे हैं बहोत ही --

जहां पे सूट वगैरा का देखा जा रहा है बहोत सारा लगा हुआ है।